और ये यहां पे रिपो झोपड़ी सी भी बनी हुई है यहां पे देख सकते हो--

बहुत सारे आदमी है ये खेल रहे हैं यहां पे बहुत सारे पेड़ भी लगे हुए हैं।

ये यहां पे देख सकते हो ये आदमी दिख रहे--

यहां पे आप देख सकते हो यह पंखे दिख रहे हैं यह सूरज की पंखुड़ियां हैं।